बहुत सारा पेड़ है छोटा-छोटा बहुत सारा पेड़ है और इसके लिए --

घर में बहुत अच्छा लग रहा है बाउंड्री है झाल है।

बाहर से नीचे देखा जाए तो सब हरा-भरा लग रहा है देखने में।

और बहुत बड़ा तालाब है। इसमें बहुत पानी भी है तालाब में।

लग रहा है मेला की तरह लग रहा है।

और ये ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है।

यहाँ पर देख रहे है कि एक घर है।

इसमें भी बहुत सारी हैं जिसमें आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया पंडाल है जिसमें पर्दा वरदा की सजावट बहुत बढ़िया है। देख सक --